यह तस्वीर एक रेस्टोरेंट की दर्शाई गई है जैसा कि आप तस्वीर में देखी पा रहे हैं।

यह तस्वीर प्राकृतिक तस्वीर नजर आती है जैसा कि आप तस्वीर में देखी पाए हैं यहां पर बहोत अद्भुत बड़े बड़े चोड़े चोड़े पहाड़--

और यहां पर बहोत बड़ा बोर्ड भी लगाया गया है।

इसके ऊपर मारुति सुजुकी का साइन भी लगाया गया है जैसा की तस्वीर में देख पा रहे हैं यहां पर गाड़ियां--

लगाया गया है राउंड शेप में दिया गया है।

यहां पर कई सारे मजदूर लकड़ी का खाचा बनाते हुए नजर आ रहे हैं।

यहाँ पर गर्ल्स के अलग-अलग टाइप्स के कपड़े --

यह तस्वीर एक पार्क की दर्शाइ गई है जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं यह एक संध्या का समय है।

इत्यादि जैसा की आप तस्वीर में देख ही पा रहे हैं यहां पर अलग अलग ब्रैंड्स --

यहां पर व्यक्ति खड़े होकर त--

जैसा की तस्वीर देखकर आप आराम से समझ ही गए होंगे--

और साइडों में को बुक्स रजिस्टर्स और लैपटॉप लैपटॉप्स के साथ फोन रखा गया है।

और हमारे सभी जरूरतो की यूजफुल चीजे यहां पर उपलब्ध है जैसा की तस्वीर में--

और यहां पर बहुत लंबी सेल्फ बनाई गई है जिसके ऊपर केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट रखे गए हैं।

तो कुछ मिरर के आगे अपना हेयर स्टाइल बनाते हुए --

यह तस्वीर लाइब्रेरी की दर्शाई गई है जैसा की तस्वीर में देख पा रहे हैं यह किसी बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट में बनी हुई लाइब्रेरी है।

और कुछ व्यक्ति आपस में बात करते हुए--

यह तस्वीर ऑन रोड की दर्शायी गई है।